वेट ना करना पड़े अ दिन का समय है।

हाँ ये बंगाल के ब्रिज का सीन है। ब्रिज के नीचे से काफी पानी जा रहा है। यहाँ पे एक एक जेंट्स और एक लेडीज हैं जो कि फोटो क्लिक करवाने के लिए खड़े हैं। पानी का बहाव काफी --

ये गेटवे ऑफ़ मैरेज़ है और दे --

पिंक कलर का रूम है ।